जैसे कि आप देख सकते है मछली दुकान है यहाँ मछली लेने को बहुत से आदमी लोग खडे है।

अ इनके पास बोहोत सारा मछली हैं।

जो ग्राहक को देते है। अच्छा यहा मछली काटने के लिए कत्ता का इस्तेमाल कर रहे है और इसमे अच्छा लकड़ी है फ्रेश लकड़ी जिसमे काट रहे मछली--

व्यापारिक अ अ गली है जहा व्यापार करते है। व्यपार के लिए हरेक चीज समान यहा देखने को मिल रहा है। अ यहा--